इधर साइड बेंच लगी हुई है बेंच के ऊपर एक सॉस का डिब्बा है रेड कलर का।

और एक पानी का जग पड़ा है पीछे एक पानी का कैंपर पड़ा है।